और साथ में सभी लोग ट्रेडिशनल अटायर में है।

स्तम्भ दिख रहे है खूब सारे जो कि एक किसी एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहे है ये शायद इसका एग्जिट है।

उन्हें काटा जा रहा है और सब बैठे हैं | साफ दिख रहा है पानी में कोई नहीं है और हम उन्हें कटा हुआ देख सकते हैं नजर है बैकग्राउंड रेड कलर का है फिश का कलर व्हाइट और ग्रे स्केल्स का है सब सेम फ़िशेस हैं।

और कई लड़कियां खड़ी हुई हैं टीचर उन्हें आदेश दे रही है बैकग्राउंड की ग्रीनरी बहुत अच्छी है पेड़ बड़े हैं। मतलब ये स्कूल एक सरकारी स्कूल है। ऐसा पता चल --

ये टरबाइन टाइप्स के लग रहे है या शायद पंखे हैंये ज ये ये चक्के हैं जिनसे इनको घुमाया जाएगा और ये कोई फेक्ट्री है क्यूंकि ये ग्रुप में लगे हुए हैं और इनको यहीं बनाया जा रहा है मटैलिक है साफ साफ पता चल रहा हैं।